ओ सब्जी डालने के लिए डोंगे रखें हुए हैं और लोटे रखें हुए --

और यहां पर एल्युमिनियम का दरवाजा लगाया गया है जिसके अंदर शीशे का डिजाइन बनाया है इसपर एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसपर बच्चे बने हुए हैं सामने सफेद रंग की दीवाल है।

ओर वो तारों को जोड़ रहा है और लकड़ी के बहोत सारे--

और सामने एक पाप्पे का बिस्किट रखा है और पीछे कुर्सी लगी हुई है और गिलास भी रखे हैं।

जिसके ऊपर सीधी लगाई है। पीछे एक टीन शटर लगाया गया है। बाहर खेत है।

आगे कोई भाषण दे रहा है और एल_सी_डी लगाई गई है।

कुछ बिस्तरा रखा हुआ है इस पर कुछ पिलर्स रखे हुए हैं।

इस चित्र में हमें यहां पर कोई गार्डन दिखाया गया है।

इसके ऊपर सोनी इलेक्ट्रिकल्स लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइड दिखाई गई है जहां पर--

यह कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर लकड़ी के कुछ कबोर्ड बनाए गए हैं।

इस चित्र मे हमें एक बहुत ही बड़ा पहाड़ दिखाया गया है जो कि पत्थरों से बना हुआ है जिसके पास एक--

यह कोई डांस परफॉर्म कर रही है जिसने एक हाथ से लहंगा पकड़ रखा है और दूसरा हाथ इसने उठा रखा है।

पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि रंग बिरंगे कलरों से भरा हुआ है।